जैसा की मैं देख पा रह हूँ यहाँ पर बहोत सारे मार्बल रखे हुए है जिसका कलर सादा है और कुछ मार्बल का कलर भूरा है और यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी है।

और यहां पर एक ऑटो भी खड़ा है जिसका कलर कला और पीला है और यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जो की पीले शर्ट में बैठा है।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

कुछ फंक्शन हो रहे हैं जिसके कारन बहुत सारे लायटे लगी हुई हैं --

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर राशन का दुकान है और दुकान में बहुत सारे सामान टंगे हुए हैं और बहुत सारे सामान रैक पर रखे हुए हैं।

एक व्‍यक्ति एक जैकेट पेहना हुआ है और एक व्‍यक्ति शर्ट पेहना हुआ है और ये शर्ट का कलर काला है।

जो कि काला ड्रेस में खड़ा है और उसके नीचे में कुछ बक्से भी रखे हुए हैं जो कि एक बक्सा का कलर सादा और एक बक्सा का कलर काला है।

और यहाँ पर कुछ फेविकोल भी टंगे हुए हैं और कुछ सेलोटेप भी हैं जो कि अलग अलग कलर के हैं जो की ब्लू और नीला कलर का भी है।

और यहां पर एक हे_सी लगा हुआ है जिसका कलर सादा है और एक लाल कलर का--

और मास्क लगा कर बैठे है और आदमी लोग जो टी-शर्ट पेहने हुए है उसका कलर अलग-अलग कलर के है और यहाँ पर बहुत सारा बल्ब लेल लगा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर एक मॉल है जो कि जूते-चप्‍पलों का मॉल है और यहां पर बहुत सारे जूता चप्‍पल रखा हुआ है एक --

रस्ते पर यहां पर गाड़ी का कलर सादा है और कुछ बाइकें भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर एक बिजली का पोल लगा हुआ है जिसमे बहुत सारे ।

और यहाँ पर एक घड़ी भी टंगा हुआ है और उसके ऊपर में कुछ पंखे भी लगे हुए हैं और कुछ लाइटें भी लगी हुई है और एक ट्यूबलाइट है।

सादा कलर के शर्ट और पेंट पहना हुआ है लेकिन एक व्‍यक्ति जो है खड़ा है जो कि लाल कलर का शर्ट और --

जैसा की मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्रक है और ट्रक का जो कलर है वो सादा और ब्लू कलर का है जिसमे भारत पेट्रोलियम लिखा --

जैसा कि मैं देख पा रहा हुँ इंहापर एक बहुत हि बड़ा तालाब है जिसमें बहुत सारे घूम रहे है।

नाव बैठकर और जो नाव चला रहे हैं उसका हाथ में चप्पू है ।

गाडी के टूल्स और कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं जो के बाइक के कुछ सामान हैं --